यह एक शॉप की फोटो है।

सामने की साइड पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

अंदर बुक्स भी काफी दिखाई दे रही है यहां पे--

पीछे की साइड काफी बेचने के लिए सामान भी रखा है।

एक ने टी-शर्ट पहनी और एक ने शर्ट पहनी है।

यह फोटो एक पार्क की फोटो हैं।

जिसमें एक कैक्टस टाइप पेड़ भी लगा हुआ है।

सामने हरे पत्ते भी दिखाई दे रहे होंगे।

जिसमें दिखाई दे रहा है कि सुबह सुबह की फोटो है।

इस फोटो में देख पा रहे कि काफी सारी पॉलीथिन दिखाई दे रही उनको आपके यहां पे--

व्हाइट कलर की सीलिंग लगी हुई है।

लोग के हाथ में बाल्टी है एक।

अह काफी सारी लोग भी खड़े हैं यहां पे।

उसका फल्स फेस दिखाई नहीं दे रहा है।

जिसमें ब्लैक कलर की कार खड़ी है।

जिसपे नंबर वन भी लिखा है।

एंट्रेंस गेट है जो की ओपन है।

गुरुद्वारे के ऊपर लाइटे लगी हुई है।

येलो का में दिखाई दे रहा--